यहा पे आप देख सकते हे बहुत ही यहा पे एक विध्यालय हे जो के देखने मे बहुत ही अच्छा लगता हे ओर यहा पे जो के यहा पे बहुत सारे पेड़- पोधे लगाए हुए हे।

और यहाँ पे ढेर सारे लोगों का दुकान भी है। यहाँ पे साइकिल है मोटर साइकिल है जो की देखने मे बहुत अच्छे लगते है काफी सुंदर है और यहाँ पे ढेर सारे पेड़-पौधे लगे हुए है जो की पूरा हरा-भरा --

और यहां पे जाल से इसको घेरे हुए देखने में बहुत ही अच्छा लगता है काफी सुंदर है यहां पे बहुत ही अच्छा --

यहाँ का आप देख सकते है बहुत सारे यहाँ पे पेड़-पौधे हैं जो की देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं।

देखने बहुत ही अच्छे लगते है और यहाँ पे गमला में फूल लगाए हुए हैं छोटे-छोटे पड़े-पौधे भी जो की बहुत से ही हरे-भरे हैं देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं काफी सुंदर है और यहाँ पे ढेर सारे पेड़ पौधे हैं बहुत ही अच्छे।